और सड़क की दूसरी ओर हमें मकान और दुकाने नजर आ रही हैं यानी नीचे दुकाने बनी हुई है।

सड़क जाती हुई नजर आ रही है और सड़क के उस पार देखे तो हमको बहुत ही ऊँचे-ऊँचे पहाड़ नजर आ रहे हैं।

और उसके बगल में इलेक्ट्रिक की दुकान नजर आ रही है यहां पर हमको पंखे वगैरा भी नजर आ रहे हैं।

बैठने के लिए और भी शोभा हो जायेंगी और हमारे घर की बहोत तारीफ़ करेंगे की हमने--

अ सर्दियों वाले ऊनी कपड़े पेहन रखें हैं और मोटरसाइकिलें खड़ी हैं।